काफी सुंदर बने हुए हैं और ऊपर से--

सामान खरीदते दिख रहा है और एक आदमी अंदर की तरफ दिखाई दे रहा है।

अनार और ब्लैक अंगूर ह ग्रीन अंगूर केले पपीता सेब --

ये एक रेस्टोरेंट है जहां पर काफी सारी कुर्सियां और टेबल रखी हुई दिखाई दे रही है।

सामने की तरफ एक फ्रिज भी रखा हुआ है जिसके अंदर कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह--

इस पिक्चर में एक सैमसंग विजय श्री नाम की शॉप दिखाई दे रही है जो कि वॉच और मोबाइल की शॉप है।

और ये नीचे पटरियां भी बनी हुई दिखाई दे रही है।